बहोत सारे पेन्स भी रखे हुए है एन्ड कुछ लोशनस भी दिख रहे है कीरिंग भी टंगे हुए है।

ये बहुत सुंदर सी पिक है यहां पे एक पेड़ भी बना हुआ है मिट्टी का एंड बहुत सारी मूर्ति भी बनी हुई है।

यह एक शॉप दिख रही है चाय की यहाँ पे बहुत सारे कप रखे हुए है बिस्किट रखी हुई हैं।

यह एक हॉल दिख रहा है जहां पे बहुत सारे लेडिज और जेंट्स बैठे हुए है कुछ बच्चे भी दिख रहे है फेन भी दिख रहा है लाइट भी जल रहे है एंड एक जेंट्स खड़े हुए है स्टेज में जिन्होंने ब्लेजर पहन रखा है वो माइक में कुछ बोल रहे है।

एक साहब आए हुये है जो कि कुछ देख रहे है उन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है आई कार्ड भी है उनके पास बोरी भी डली हुई है।